और ये यहाँ पे गाड़ी दिख रही है यहाँ पे--

तस्वीर वगैरा दीख रहे हैं पानी वगैरा दीख रहा है।

ये यहां पे मंदिर दिख रहा है लड़ी वगेरा--

देख सकते हो ये आदमी देख रहा है।

ये यहां पे देख सकते हो यहां पे--